दाएं बायें दोनों तरफ इंसान खड़े हो रहे हैं।

साथ ही साथ बाहर कुछ टंगा हुआ है।

पुस्तक के अलावा बहौत सारी खेलने कूदने की चीजे भी बिकती है।

ऊपर माँ चंचल ऑफ़ ड्राई फ्रूट्स लिखा गया है।

इसके ऊपर कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है।

ऊपर बल्ब जल रही है साइड में हूला हो भी दिख रही--

सामने टीचर्स लोग भी खड़े हो रहे हैं।

आगे में मोटर रखा गया है।

आगे की ओर बड़े बड़े बाहर दिख रही है।

इस फोटो को देखकर मालूम चल रहा है कि यहां फेस्टिवल मनाया जा रहा है।

जोकि एक वांग्चू कम्युनिटी लोग मनाया जाता है।

साथ ही साथ माथे पे एक पंख लगाया गया है।

साथ ही साथ इंसान के साथ बाइक भी खड़ी हो रही है।

तालाब के ऊपर बरे बरे बरे पेड़ दिख रही है।

जिसमें दो टेंट दिख रही हैं एक का रंग हरा है दूसरा का रंग सफेद है।

सामने से एक बस गुजर रही है।

फूल सिर्फ सफ़ेद रंग और लाल रंग की बिक रही है।

नीचे में ईट के टुकड़ों भी रखा गया है।

आस पास में बहुत सारे इंसान बैठे हुए है।

ऊपर पंखा चल रही है और साइड में बत्तियां जल रही है।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

इसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई गई है।

इस फोटो को देख कर पता चल रहा है कि यह एक गोदाम है।

सामने एस_बी_आई का लोगो लगा हुआ है।

इसमें दो इंसान उसकी मरम्मत कर रही है।

सामने एक बुड्ढा बैठा हुआ है।

नीचे एक वीवो का बोर्ड लगा हुआ है।

प्रिंटर भी रखा गया है।

इस फोटो को देखकर पता चल रहा है कि यह एक गैरेज की फोटो है।

लड़की ने लाल रंग का सूट पहना हुआ है।

लड़की के हाथों में सुंदर सा कंगन भी पहना गया है।